मुझे इस फोटो में घोड़ा नजर आ रहा है मुझे इस फोटो में बिल्डिंग नजर आ रही है मुझे --

में गेट नजर आ रहा है मुझे इस फोटो --

मुझे इस फोटो में खिड़की नजर आ रही है।